रेड है यह बिल्डिंग बहोत ही सुंदर दिखाई दे रही--

और टेंट के साथ में कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं।

पीछे एक रेड कलर की इमारत और दिखाई दे रही है।

यहाँ बिजली भी लगई गइ है और--

और यहां पर सब लोगों को मस्ती कर रहे हैं।

और उसमें बहोत सारा पानी भी

दिखाई दे रहा है और इस के किनारे बने हुए हैं।

इसकी दीवार का व्हाइट दिखाई दे रहा--

ओ बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा हैं।

यहां पर एक कोचिक सेंटर दिखाई दे रहा है यहां पर एक रिसेप्शन भी बना हुआ है और कुछ सोफे भी --

सभी ओ लोग यहां नहा रहे हैं।

और इस घर के सामने एक बाइक में खड़ी हुई--

सामने एक एस_बी_आई बैंक का ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

सामने एक बहोत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है वहां पर कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले--

हैं सामग्रियां पड़ी हुई हैं और एक बहुत बड़ी--

और साइड में और बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस ए_सी का कलर वाइट रंग का है और यह बहुत ही ठंडी हवा करता हुआ दिखाई दे रहा है।

नोटबुक रजिस्टर्स पड़े हुए हैं और एक चेयर्स भी दिखाई दे रही है जिस पर एक जन--

थाने ये कि बहुत बड़ी--

सामने पानी का तालाब दिखाई दे रहा है।